और एक फिसलपट्टी बनी हुई है जो ऐलो कलर की है और ब्लू कलर के खंबे पर खंबा लगा हुआ है उसके नीचे।

आसमान दिख रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है और सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे पहाड़ी दिख रही है पहाड़ी के नीचे कुछ आदमी दिखाई दे रहे है।

और ऊपर आसमान भी दिख रहा हैं पेड़ भी दिखाई दे रहे है बस पर नवकार लिखा हुआ हैं।

दो शेर की प्रतिमा बनी हुई दिखाई दे रही है एक गाड़ी भी दिख रही है एक स्ट्रीट लाइट भी दिख रही है।